हेलो गाइस ये कोई शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारी वाशिंग मशीनस है कूलर्स है।

ये नाउट का मंदिर है और या फिर एनो मन बाबा की मान्यता है।

हेलो गाइज आप देख पा रहे हैं यहां एक--